और फिर बाहर की साइड देखें तो वहां पौधे लगे हुए है ग्राउंड में छोटी-छोटी घास लगी हुई है।

नीचे एक पंखा लगा हुआ है नीचे बेंच पड़ी है।

भूमिका लाइब्रेरी नाम लिखा हुआ है ऊपर नीचे लाइब्रेरी के अंदर की साइड एक साइकिल हैं और एक मोटरसाइकिल खड़ी है।

सामने छोटे छोटे पत्थर पड़े है पत्थरों के बीच में कुछ कपड़े पड़े है उतारे हुए है और सामने एक --

और यहां कुछ डिब्बी डिब्बियां रखी हुई हैं डिब्बियों के अंदर कुछ सोने और चांदी के आभूषण रखे हुए हैं बाहर कुछ पैकेट पड़े --

और सामने एक घर बना हुआ है घर के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है बीच में एक बहोत बड़ा पेड़ है पेड़ के नीचे चौकी बनी हुई है।